जय हिन्द दोस्तों। देखिये दोस्तों ये बुनाई की मशीन है।

यहां पर बहोत सी बाइके खड़ी हुई है और दो लोग खड़े हुए है।

देखिये दोस्तों यहां पर एक व्यक्ति एक छतरी बनी हुई है।

देखिये दोस्तों ये फ्लावर बाजार है फ्लावर मार्किट ।